यह एक जगह है जिसके आस पास बहुत सारी हरियाली और पेड़ पौधे दिख रहे है यहाँ बहुत सारी लाइट भी दिख रही है।

यहाँ एक जगह है इसके आस-पास बहोत सारे लोग बहोत सारे घर दिख रहे है।

यहाँ पर एक काले कलर का दरवाजा भी दिख रहा है।